यहां पर बहोत बढ़िया सब बिल्डिंग है बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है और उसके सामने--

यह रामकृष्णा मिशम आश्रम शिमला में है।

यहां पर कुछ भगवान के स्टैचू है।

और बुक तरह-तरह के बुक्स यहां पर मिल जाते हैं।

यह एक फलों का शॉप स्टॉल है।

यहां पर एक पार्क है और वहां पर कुछ बच्चों के लिए खेलने के लिए झूला है कुछ सीट है।

विश्वविद्यालय के घर है एक बहुत बड़ा सा घर है।

मुर्निसिपलिटी मुर्निसिपलिटी का --

पर्दे लगाए हुए हैं विंडो को और कुर्सियां हैं सोफा है टेबल है।

एक टेबल और कुर्सियां है और खुला जगह है।

ये एक डाइनिंग टेबल है यहां पर बड़ा सा टेबल है और--

उसके आगे बहुत बड़ी सी गार्डन जमीन है खुली जमीन--

यहां पर एक हॉल है वहां पर एक बच्चा गेम खेल रहा है।